और बहुत सारे लड़के वहां पर खड़े हुए हैं।

कुछ टॉप दिखाई दे रहा है वहां से एक ब्लैक और येलो कलर की व्हॅन चल रही है।

एक हॉल नजर आ रहा है वहां पर कुछ टेबल रखे हुए हैं।

और एक आदमी वहां पर खड़ा हुआ है।

सामने कॉलेज दिखाई दे रहा है एस_एम कॉलेज --

जिम दिखाई दे रही है एक आदमी वहां पर खड़ा हुआ है।

और अलग-अलग तरह के बॉटल्स भी रखे हुए हैं ।

एक दुकान में पॉट बिक रहे हैं मटके दिखाई दे रहे हैं।

और फ्लावर पॉट भी नजर आ रहे हैं।

फूल सब तरफ फूल दिखाई दे रहे हैं।

तीन ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहे हैं और सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है और झाड़ भी लगे हुए हैं।

स्कूल के सामने नृत्य कर रही है वाइट कलर की ड्रेस पहनकर नृत्य कर रहे हैं ।

वहां पर गुलाब के फूल और बहुत अलग-अलग तरह के फूलों के--

जिसमें गुलाब के फूल और अलग तरह के फूल नजर आ रहे हैं।

सामने की और घर के सामने बहुत सारे झाड़ दिखाई दे रहे हैं।

अलग अलग-अलग तरह के चिप्स वहां पर दिख रहे हैं।

सामने की ओर मॉ-- बहुत बड़ा मॉल दिखाई दे रहा है।

वहां पर बहुत सारे शॉप भी लगे हुए हैं।

और साइड से झाड़ भी लगे हुए हैं।

सामने कार दिखाई दे रही है जो शोरूम में लगे हुए हैं।

सामने की ओर खेलने का मैदान नजर आ रहा है और बिल्डिंग्स सब तरफ दिखाई दे रहे हैं।

वहां पर वर्क चल रहा है फर्नीचर का वर्क चल रहा है।

और दीवारें नजर आ रही है।